यहां पर एक बीच में पोस्ट बनाया गया है। जिसे लाल रंग से रंग किया गया है। जिसे चारों तरफ से पत्थर से घेरे गए हैं। इसके पास में एक छोटी सी दुकान बनाई गई है।

इसके पास से एक वैन भी जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऑटो भी जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स सेंटर भी खुले है। बहुत सारे स्टॉल भी लगाए गए है। इसके ऊपर से छाता बना के इसक कवर किया गया है। यहां बहुत सारे घर भी बने हुए हैं। साथ ही साथ यहां बहुत कुछ बना हुआ भी--

यह एक बिल्डिंग है और काम चल रही है यहां दो मिस्ट्रीय पेंट का काम कर रहे है

चल रहा है। यहाँ पे घर बनाए जा रहे है। इसके निचे पूरा पानी जमा किये हुए है। यहाँ सीमेंट के कामो से पक्का करने के लिए यहाँ निचे पानी गिराया गया। साथ ही साथ यहाँ लोहे के रोड लगे हुए है। लोहे के रोड के ऊपर पलस्तर किये गए है।

आते-जाते ए यहाँ बहुत ए किये गए है। यहाँ पे निचे काट की लट लकीरें भी लगी हुई है। यहाँ पे बहुत इये हुए है। साथ ही यहाँ पे पित्ती के पटपी गए है।

साथ ही साथ चैलु सैलून में गाने बजाने वाले बॉक्स भी रखे हुए है। भगवान की मूर्ति भी रखी हुई है। सैलून की दिवार को हरे रंग से रंग किया गया है। यहाँ पे दो लाइट भी जल रही है। और सामने दो लाइट जल रही है। हम का या के बी दो लाइट्स बंद किया गया --